यहां एक नदी है नदी के ऊपर से एक पुल गुजारा गया है।

यह एक रूम है रूम के सामने में एक खिड़की भी है यह इसका फर्श लाल कलर का है।

यह एक होटल है जिसमें छह टेबुल्स लगे हुए हैं और कुछ कुर्सियां लगी हुई है जो की अलग अलग रंग की हैं।

इस होटल में दो पंखे लगे हुए हैं तथा एक टी_वी भी लगी हुई है।

यह एक चिकित्सालय हैजो कि देव घर में स्थित है।

यह एक घर से ली गई बाहर की दृश्य है यह रात का समय है।

यह एक मैदान का दृश्य है जिसमें ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इसमें कुछ व्यक्ति दिए जलाते हुए नजर आ रहे हैं दिए तथा मोमबत्तियां जलाकर दिवाली मना रहे --

इसमें एक बड़ा सा आईना भी लगा हुआ है।

यह एक होस्पिटल का दृश्य है जिसके ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें श्री होस्पिटल लिखा हुआ है ।

उसके आगे मे एक घर है वहां पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ किसी प्रकार का पूजा चल रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति कुछ औरत तथा कुछ बच्चे और उसके साथ पंडित भी सम्मिलित है।

यह एक राशन दुकान है जिसमें बहुत तरह तरह की समाने बिक रही हैं।

इस दुकान में ए_सी लगा हुआ है तथा कुछ दवाइयां भी रखी हुई है।

इस पेट्रोल पम्प में कुल छे पेट्रोल प टंकी है जोकि तेल भरने के लिए काम आते हैं।